एक जगह दिखाई दे रही है जिसमें कूड़ा-करकट पड़ा है और गन्दा सा एक जगह में पानी इकट्ठा हो रहा है एक बड़ा विशालकाय वृक्ष दिखाई दे रहा है बहुत बन- बहुत बड़ी-बड़ी मंजिला ईमारतें दिखाई दे रही हैं बिजली के खंबे दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं पत्ता गोभी रखी हुई है और यहां पर ऊपर छपरी टाइप बना हुआ है कूड़ा करकट--

एक मैदान अम्म अम्म जंगल का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े-बड़े वृक्ष हैं और छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं कलरफुल पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

हम्म ऑटो इस्टेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे रोड पे कुछ ऑटो खड़े है कुछ ऑटो स्टेशन पे कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रही है ए_सी दिखाई दे रहा है इसमे बल्फ लगे हुए है और दीवार मे उपर एक फ्रेम टंगी हुई है एक और बीच की तरफ एक फ्रेम है जिसमे ए_पी_जे अब्दुल कलाम दिखाई दे रहे है।

और पुरी फ्रेम ब्लैक और वाइट है बिच बिच में तीन चार फोटो कलरफुल दिखाई दे रहे है एक सोफा दिखाई दे रहा है उपर बल्ब दिखाई दे रहा है और गेट पर टाला--

एक बहुत हि सुंदर लाल कलर का फूल दिखाई दे रहा है जिसकी पंखुड़ियों पे सफेद कलर दे रहा है ।